घर है छोटा-छोटा लाइट है बड़ा वाले।

पार्क है पानी है मोटर है आदमी है।

बहुत बड़ा पत्थर है गाछ है.

पंडित है और ये दुर्गा है दुर्गा के बहोत सारा पैर हाथ है ।

मंदिर है गाछ है सीसा है।

पोस्टर है हैप्पी दिवाली लिखेला है पोस्टर मे।

ग्राम श्री मंडल लिखल है मेला में झुलवा है लाइट है गाछ है आदमी है बच्चा है गुपचुप बेचा --

मंदिर है लाइट है।